ये बच्चे हैं और खो-खो खेल रहे --

और पूजा अर्चना कर रहे है जो की भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान से जो है कि अपनी मनो कामनाओ को पूर्ण होने की दुआ --